और दुकान का नाम है बाल दाड़ी स्पा एंड सैलू --

कुर्सियां भी डाल रखी है।

बहु बेटी दूर ना जाए। शौचालय घर में ही बनाए।

यह दृश्य एक जिम का है।

यहां पर एक सुपरवाइजर अपने लेवर को कुछ समझाते हुए नजर आ रहा है।

इस दुकान के सामने एक खुला ग्राउंड है।

स्कूटी और मोटरसाइकिल स्कूटर आदि पार्क कर रखी हैं।

यह दृश्य किसी पेट्रोल पंप का है और यह पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल कंपनी का है।